यहाँ पर उसके दोनों तरफ पौधे लगे हुए है और मिटी पड़ी है घास भी है जो हरी और अ गुलाबी है।

और सामने एक कमरा दिख रहा है मुझे जिसपे अ एक टीवी रखी हुई है म्यूजिक इंस्टूमेंट्स रखे हुए है।

टेबल है काले रंग की इसपे दो चेयरे है एक वाइट बोर्ड है जिस पर लाइट लगी हुई है।

सामने एक पुल बना हुआ है जिसकी दिवार के सहारे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने सर पे रुमाल बाँधा हुआ है।

ये एक जिम है यहाँ कि दीवारे जो है वो स्किन रंग की है जिसपे शीशे लगे है यहाँ कि फर्श --

दरवाजा है लकड़ी का जो कि खुला हुआ है।

और कुछ हरा भी है निचे एक मेड बनी हुई है जिसमे सीमेंट बनी हुई है इसके साइडों में कई काई लगी है और पीछे एक शेड पड़ी हुई है।

शीशे लगे हुए है इसपे और और रेग भी शीशे की बनी हुई हैं।

जिसके अंदर ग्रूमिंग के प्रोडक्ट रखे हुए है यहाँ की फर्श है पिले रंग की जिस पर बाल पड़े हुए है कटे हुए--

यहाँ पे कुछ आ स्टैंड से लगी जिसपे लाल कपडे लगी हुई है इनपे दिए है जिसपे अगरबत्ती और मोमबती भी जल रहे है जिसके लौ पिले रंग की है।

ये मैडन नाम का यहाँ पे क्विक लौंडरी डॉट कॉम लिखा हुआ है और जर्मन कांसेप्ट लिखा हुआ है निचे केबिन बना हुआ है शीशे--